सड़क के ये राईट साइड दोनों तरफ ऊचे- ऊचे लाइट के खंबे लगे हुए हैं।

सड़क के एक तरफ एक बड़ी सी पीले रंग की बस खड़ी हुई है।

मैदान में दूर दूर पर हरी भरी घास--

उस ब्रीज की आइट साइट --

और होल की छत पर --

तालाब के बीचो बिच एक बड़ी--

होली का रंग लगा हुआ है।